ये एक ग्रावुन्द है जहा पे क्रिकेट की मेच चल रही है और सारे खिलाड़ी अपने अपने स्तेत्जी बढ़ा रहे है एकल दुसरे से बात कर रहे है की किस तराह से गेम को जीता जाए।

और इसके नीचे बहुत सारे ईंटे सीमेन्ट रखे हुए हैं।

ये गया का गया का मनपुर पूल है जो फल्गु नदी के ऊपर है ये पूल बहुत लंबा हैं अभी-अभी सुबह का समय हुआ हैं ।

और यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिज़ाइंस की गई है लोगो के बेठने के लिए।

ये हमारा गया का रबर डैम है जो बनाया जा रहा है इसकी कंस्ट्रक्सन की अभी काम चल रही है।

ये एक मशीन हैं जहाँ एक फैक्ट्री हैं बहोत सारी मशीन लगे हुए ये कपड़े की फैक्ट्री है यहाँ पे कपड़े की प्रिंटिंग की जाती हैं और अंदर इंजीनियर साहब का ऑफिस भी हैं।